कथक कर रही साड़ी पहने हुई है और डांस में डांसिंग हमारो है वहाँ पे डांस कर रही है बहुत अच्छा से डांस कर रही है।

जो मराठी भाषा में कुछ मराठा में है ऐसा दुकान क्यूंकि उसका भाषा मराठा में है।

और बहुत सरे समान है साबुन भी मिल रहा है यहाँ पे तेल है बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट में बहुत सरे समान हैं जो बच्चो को जरुरत की सामान होती है।

ये कोई घूमने का जगा है। यहाँ पे बहुत सारे लाइटस लगा हुआ है --]